ये एक गेराज इसके अलावा यहाँ का जो वाल है ऊपर निचे काफी सूटेबल पत्थर से इसे बनाया गया |

छोटे बड़े बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई बिल्डिंग है यहाँ पे साथ ही साथ आसमान में पटाखे फूटते हुए दिख रही हैं।

यहाँ पे बहुत सारे लोहा की खिड़कियाँ बनी हुई है कुछ छोटे छोटे घास भी हैं रोड हैं सिडिया बनी हुई है स्टोर के सामने और जो रोड हैं वो पूरी तरह के से खाली हैं कोई इंसान नही है।

साथ ही साथ यहाँ पर कपड़े डली हुई है कुछ एक जगह पर एक इंसान लोग गैथरिंग कर रहे हैं और बहुत सारे जो पानी जहाँ पर हैं वहाँ पे बहुत सारे पत्थर ईटा ये सारी चीज फेकी हुई दिखाई दे रही हैं।

ग्रीन ग्रास से भरी हुई है काफी बड़ी जगह है पूरी मैदान खाली है और साथ ही साथ ऊपर में आसमान दिखाई दे रहा है एक दो इंसान भी दूर के तरफ पहाड़ के जगह पे दिख--

दूर पे भी काफी ग्रीन ग्रीन ग्रास यानी की घांस दिखाई दे रही है और ऊपर आसमान है जो की पूरी तरीके से खाली है।